उस के साइक मे चार बाइक रखी हुवी है तीन से चार खम्बे है।

उसके अलावा यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है वो जो की ब्लैक और व्हाइट कलर की है रूम मे पेंट किया हुआ है वो भी व्हाइट कलर का ।

एक खिड़की है तो खिड़की के बाहर एक डोर है डोर के लगते ही कुछ सीढ़ियां बनाई हुई है एक तुलसी का पौधा है।

इस चित्र मे एक शॉप दिखाई दे रही है जिसके अन्दर काफी सारे साड़ियाँ राखी हुई है।